ये चित्र है सेंट पॉल स्कूल का जो कि क्रिश्चियन स्कूल है। स्कूल के उप अ दूसरे माले पे लाल रंग का क्रॉस है। क्रिश्चियन का क्रॉस पीले रंग की इमारत है।

ये दुकान है। दुकान के चित्र हैं। नदीम ऑटो पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर की दुकान है। जहां पर आप बाइक ब ब स्कूटी हीरो की बजाज की टीवीएस की ठीक करा सकते हैं।

एक बांध की तस्वीर है। लोहे का बांध बना हुआ है जिसमे ऊपर की तरफ लोहे के बहोत (बहुत) बड़े-बड़े डब्बे हैं ।

छोटे-छोटे घाँस हैं पौधे हैं जो कि सूखे हुए हैं। सूखे हुए पेड़ हैं जिन पे कोई पत्ते नहीं है। काफी पुरानी जगह है। पहाड़ी --

हवाई अड्डे की बाहर का ही यह चित्र है जहाॅं पर एक गाड़ी खड़ी है सफेद रंग की गाड़ी है। गाड़ सब रास्ता है ये --

इस चित्र में सामने ईसाई धर्म की जो देव मदर मेरी होती हैं उनका चित्र है।

पुराना कीला है ये पुराना महल जिसमें सीढियाँ से कुछ बंदे नीचे उतर ते हुए नजर आ रहे हैं।